इस फोटो में मुझे एक ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक बनती हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में अलमारियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में मैदान दिखाई दे रहा है।

मुझे इत फोटो में बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो में बाइक दिखाई दे रही हैं।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

मुझे इस फोटो में खेत दिखाई दे रहा है।